लड़का शर्ट पेहना हुआ है शर्ट --

पहाड़ पर से पानी गिर रहा है झरने --

है। झरने की तो सुंदरता बहुत अच्छा है।

का है बहुत कलर कलर का साड़ी है।

ब्रिज है। ऊपर रोड बना हुआ है। नीचे से ट्रेन पार होता है और बेड लगा हुआ है।